होटल है और यह होटल --

जिसके कारण लोग यहाँ पे भोजन करना काफी पसंद करते हैं।

और अपने और अपने परिवार के साथ आते हैं भोजन के करने के लिए।

और वो बहुत सारे खेल खेलना पसंद करते हैं।

एक जिम है और ये जिम काफी बड़ा है।